एक लड़का टायर साफ कर रहा है।

ग्रीन कलर का वर्ल्ड कंपाउंड है।

तीन रेड कलर के बलून लगाए हुए--

ब्लू कलर के कपड़े पहने हुए हैं।